सारे आदमी बहुत सारे आदमी है लगता है कोई फ़िनशन हो रहा है।

पेड़-पौधो है । हरा-भरा है । इधर गार्डन के तरह देखने में लगता है । आदमी घुर रहा है । बहुत सारे पेड़ हैं ।